पीछे की खिड़कियां कांच की दिखाई दे रही है और कुछ पास में टी_वी लगी दिखाई दे रही है कुछ गेट लकड़ी के बने हुए दिख रहे है ऊपर की छत दिख रही जिसके अंदर लाइट जलती --

पगीच कुछ पंखे और लाइट जलती दिख रही है सामने गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे कोने पे ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जिस मैं कुछ--

यह किसी ऑफिस कांफ्रेंस रूम का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके यहाँ सामने एक टेबल बनी है टेबल के ऊपर दिखाई दे रही है।